पेट्रोलपम्प का कलर ऑरेंज है पेट्रोलपम्प पे मशीने रखी है एक ऑटो खड़ा है जिसमें पेट्रोल डल रहा है।

'' ये एक रत्नास इट स्ट्रीट है। यहाँ पर बोहोत सारा सामन मिलता है एक बहार वाश बेसिन लगा है रत्नास का बोर्ड ब्लैक और रेड कलर का है इसके ऊपर बर्गर बना है। ''

यह एक मंदिर है मंदिर ऑरेंज कलर से पूता है कहीं रेड कलर से पूता है एक सीडी दिख रही है ऑरेंज वाले के ऊपर एक झंडा लगा है।